introduction to libreoffice calc पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
libreoffice calc के बारे में
विभिन्न toolbars
नई और मौजूदा spreadsheet कैसे खोलें
calc में spreadsheet सेव और बंद कैसे करें
ms excel spreadsheet के रूप में सेव कैसे करें
pdf document के रूप में export कैसे करें
libreoffice calc क्या है
यह microsoft office suite के microsoft excel के समतुल्य है
यह free और open source software है
यह बिना किसी प्रतिबंध के साझा संशोधित और वितरित किया जा सकता है
libreoffice calc किसी भी निम्न operating systems पर कार्य कर सकता है
microsoft windows 8 या उच्चतम versions
gnu/linux os और
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
default रूप से नवीनतम ubuntu linux os में libreoffice पहले से ही संस्थापित है
विशिष्ट version संस्थापित करने के लिए इस website पर libreoffice installation श्रृंखला का अनुकरण करें
libreoffice calc खोलना सीखते हैं
ubuntu linux os में निचले बाएं कोने पर show applications icon पर click करें
search bar में calc type करें
प्रदर्शित सूची से libreoffice calc icon पर click करें
windows os में निचले बाएं कोने पर स्थित start menu icon पर click करें
search bar में calc type करें
प्रदर्शित सूची से libreoffice calc icon पर click करें
यह मुख्य calc window में एक खाली spreadsheet document खोलेगा
अब calc window के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं
calc window में विभिन्न toolbars हैं
title bar menu bar standard toolbar formatting bar formula bar status bar और sidebar
जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी हम इनके बारे में सीखेंगे
calc में पूर्ण spreadsheet document को workbook कहा जाता है
कार्य क्षेत्र जहां data टाइप किया data है उसमें grid के रूप में कई cells होती हैं
अन्य शब्दों में cells rows और columns में व्यवस्थित होती हैं
एक विशेष cell row और column के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करती है
इसकी पहचान इसके संबंधित row number और column alphabet से की जाती है
cells में text numbers सूत्र और कई अन्य data elements जैसी जानकारी रख सकते हैं
cells का उपयोग data प्रदर्शित और फेरबदल करने के लिए किया जा सकता है
हम spreadsheet के निचले बाएं कोने पर sheetटैब देख सकते हैं यह टैब sheet के ऐक्सेस को संक्षम बनाता है
default रूप से हम interface पर एक sheet देख सकते हैं और यह sheet 1 के रूप में नामित है
प्रत्येक spreadsheet में कई sheets हो सकती हैं
प्रत्येक sheets में एक लाख से अधिक rows और एक हजार columns हो सकते हैं
जो कि एक एकल sheet में एक अरब या सौ crore cells से अधिक है
प्रत्येक row एक number और प्रत्येक column एक english alphabet द्वारा पहचाना जाता है
यहां column के शीर्ष पर अक्षरों सहित grey boxes की एक श्रृंखला है
इसी तरह हम rows के बाएं छोर पर नंबरों सहित grey boxes देख सकते हैं
ये column और row headers हैं
columns a से शुरू होते हैं और दाईं ओर बढ़ते हैं
और rows 1 से शुरू होते हैं और नीचे की ओर जाते हैं
toolbars के साथ शीर्ष पर हमारे पास दो अतिरिक्त fields भी हैं name box और input line
column और row headers cell references बनाते हैं और ये name box फील्ड में प्रदर्शित होंगे
यह calc के विभिन्न घटकों का संक्षेप वर्णन था
अब सीखते हैं कि calc में now spreadsheet कैसे खोलें
हम standard toolbar में new icon पर क्लिक करके नई spreadsheet खोल सकते हैं
वैकल्पिक रूप से menu bar में file menu पर जाएं
फिर menu new पर click करें और spreadsheet विकल्प चुनें
untitled 2 named नई calc spreadsheet खुलती है
ऊपरी दाएं कोने पर x icon पर क्लिक करके untitled 2 named नई खुला spreadsheet को बंद करें
अब हम सीखेंगे कि spreadsheet में personal finance tracker कैसे बनाएं
spreadsheet में a1 संदर्भित cell पर click करें
heading sn type करें
यह items का serial number दर्शाता है जिसे हम spreadsheet में input करेंगे
अब b1 संदर्भित cell पर click करें और अन्य heading items type करें
सभी item names जिसे names spreadsheet में उपयोग करेंगे इस heading के तहत आएंगे
उसी प्रकार एक के बाद एक c1 c1 c1 c1 and c1 cells पर click करें
क्रमशः cost spent received date और account headings type करें
document टाइप करने के बाद हमें इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए
file को सेव करने के लिए standard toolbar में save icon पर click करें
screen पर एक dialog box प्रदर्शिक होता है
यह हमें name field में अपनी file का name प्रविष्ट करने के लिए प्रेरित करता है
मैं फाइल का name personalfinancetracker type करूंगी
मैं मेरी file को सेव करने के लिए स्थान के रूप में बाईं ओर पर desktop चुनूंगी
ध्यान दें हमारे पास निचले दाएं कोने पर file type ड्रापडाउन है
drop down पर click करें
यह file types या file extensions की सूची दर्शाता है जिसमें हम अपनी file सेव कर सकते हैं
libreoffice calc में default filetype odf spreadsheet ods है
odf अर्थात open document format जो एक open standard है
मैं मेरी फाइल सेव करने के लिए odf spreadsheet पर click करूंगी आप इसीतरह अपनी मशीन पर करें
dialog box के ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
हम calc window पर वापस आ जाएंगे
अब title bar में बदलाव पर ध्यान दें
यह personalfinancetracker ods में बदल गया है
dot ods format में सेव करने के बजाय हम अपनी file dot xls और dot xlsx format में भी सेव कर सकते हैं
इन फॉर्मेट वाली files बाद में ms excel application में खुल सकती हैं
save icon पर click करने के बजाय ड्राप डाउन arrow और फिर save as विकल्प पर click करें
save as dialog box में निचल् दाएं कोने पर file type ड्रापडाउन पर click करें
excel 2007365 xlsx format चुनें
dialog box के ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
यदि हम file को किसी any file format में सेव करते हैं तो confirm file format dialog box खुलता है
ask when not saving in odf or default format विकल्प check करें
फिर use excel 2007365 format button पर click करें
हम वापस calc window पर आ जाएंगे
title bar में filename में बदलाव देखें
spreadsheet को pdf format में भी exported किया जा सकता है
ऐसा करने के लिए standard toolbar में export directly as pdf icon पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम menu bar में file menu और फिर export as pdf विकल्प पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं
pdf options dialog box खुलता है
इस dialog box में हम pdf विकल्प को कस्टमाइज करने के लिए विभिन्न settings देखेंगे
default settings को ऐसे ही रहने दें और निचले भाग में export button पर क्लक करें
वह स्थान चुनें जहां हम file सेव करना चाहते हैं और फिर save button पर click करें
उस folder में pdf file बन जाएगी
अधिकतर applications में खुलने वाला अन्य प्रसिद्ध file extension dot csv है
यह अक्सर text file format में spreadsheet data data संचित करने के लिए उपयोगित है
यह फाइल का आकार बहुत कम कर देगा और यह आसान वहनीय होता है
इसके अतिरिक्त हम spreadsheet को dot html format में सेव कर सकते हैं जो web page format है यह उसी तरह किया जाता है जैसा कि ऊपर समझाया है
file type drop down में html document calc html चुनें
यह विकल्प spreadsheet में dot html extension प्रदान करता है
फिर से सेव करने के लिए समान स्थान चुनें
फिर dialog box के ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
confirm file format dialog box खुलता है
ask when not saving in odf or default format विकल्प check करें
फिर use html document calc format button पर click करें
हम देखते हैं कि file dot html extension के साथ सेव हो गई है
इस format का उपयोग तब किया जाता है जब हम spreadsheet को web page के रूप में दर्शाना चाहते हैं
इसे किसी भी web browser में खोला जा सकता है
file menu और फिर close पर क्लिक करके इस spreadsheet को बंद करें
अब हम सीखेंगे कि libreoffice calc में एक मौजूदा spreadsheet कैसे खोलें
spreadsheet personalfinancetracker ods खोलें
libreoffice interface के बाएं ओर open file menu पर click करें
file browser dialog box खुलता है
उस स्थान पर जाएं जहां आपकी file सेव थी
अब प्रदर्शित फाइलनाम की सूची में personalfinancetracker ods चुनें
फिर ऊपरी दाएं कोने पर open button पर click करें
file personalfinancetracker ods calc window में खुलती है
इसी तरह हम calc में dot xls और dot xlsx extensions के साथ files खोल सकते हैं
आगे देखते हैं कि समान filename के साथ file को संशोधित और सेव कैसे करें
headings को bold और उनके font size को बढ़ा कर file को संशोधित करें
ऐसा करने के लिए a1 संदर्भित cell पर click करें
अब standard toolbar में bold पर click करें हैडिंग sn bold हो गई है
standard toolbar में font size field में downarrow पर click करें
drop down में 14 चुनें
heading sn का font size 14 हो जाता है
अब हमारे द्वारा उपयोगित font बदलते हैं
standard toolbar में font name field में downarrow पर click करें
drop down से arial font चुनें
इसीतरह बाकी headings संशोधित करें
अब हमारे द्वारा किए गए बदलाव सेव करें
ऐसा करने के लिए standard toolbar में save icon पर click करें
अब spreadsheet बंद करें
menu bar में file menu पर click करें और फिर close विकल्प पर click करें
इसी के साथ हम इस spoken tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
libreoffice calc के बारे में
calc में विभिन्न toolbars
नई और मौजूदा spreadsheet कैसे खोलें
spreadsheet सेव और बंद कैसे करें
ms excel spreadsheet के रूप में कैसे सेव करें और
calc में pdf document के रूप में export कैसे करें
नियतकार्य के रूप में calc में एक नई spreadsheet खोलें
इसे spreadsheetpractice ods name से सेव करें
sn name department और salary headings type करें
headings को underline और bold करें
headings का फॉन्टसाइज 12 करें
file को सेव और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial से संबंधित कोई प्रश्न है
कृपया इस site पर जाएं
minute और second चुनें जहां आपके पास प्रश्न है
अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं
spoken tutorial project team उत्तर सुनिश्चित करेगी
प्रश्न पूछने के लिए आपको इस website पर पंजीकरण करना होगा
spoken tutorial forum इस tutorial के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद